बादल है नीचे मिट्टी वाला जमीन है।

यह एक स्कूल जैसा दिख रहा है जो ऊपर से पीले रंग से पेंट है और नीचे से लाल रंग--

यहां पर घर जैसा दिख रहा है बहुत सारे आदमी लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पर।

हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं लाइट के वजह से।

नीचे टाइल्स बिछाया हुआ है जो अंधेरा टाइप का दिख रहा है और ऊपर से बल्ब जल रहा है।

एक बेंच पर भी एक मोटा सा किताब रखा है एक कॉपी जैसा है।

कुछ बड़े बड़े भी मछलियां रखी हुई है और तीन चार बल्ब जल रही है।

हरे भरे पेड़ पौधे हैं कुछ पहाड़ सु सामने से भी दिख रहे हैं ।

गाड़ी का बल्ब दिखाई दे रहा है ।

कुछ खिड़कियां भी हैं दरवाजा ब्लैक रंग से पेंट की गई है।

नीचे फूल वगैरा लगाए गए हैं।

यह एक छोटा सा मकान है जो मिट्टी का है।

बाहर से करकट दियाग दिया गया है।

उधर हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं नीचे मिट्टी वाला जमीन है।

एक पीछे से लड़की खड़ी है जो हरे पहनी है।

इस मंदिर में बड़ा सा गेट लगाया हुआ हैं और लोहे का खिड़कियां भी लगी हुई है।

बाहर से एक बैनर लगाया गया है जो ब्लू और रेड रंग का है।

दिया गया है जो पीले रंग से पेंट की गई है ।

बाहर से लिखा हुआ है जायसवाल डी_जे साउंड एंड इलेक्ट्रॉनिक ।

बहुत सारा एल_सी_डी रखा हुआ है जो बहुत बड़ा बड़ा है और छोटा छोटा भी है यहां पर --

कुछ नीचे भी एल_सी_डी रखे हुए हैं एक चल रहा है।

उधर भी कुछ सामान रखे हुए हैं।

यहां पर एक दुकान दिख रहा है जिसमें कुछ आदमी लोग बैठे हुवे हैं कुछ खड़े हैं।

कुछ बच्चे लोग भी दिखाई दे रहे हैं हरे भरे पेड़ पौधा है।

उधर वाइट रंग का मकान है।

यहां पर अलमारी जैसा बनाया गया है जो पीले रंग सा पेंट किया गया है।

हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे है और एक मेन द्वार दिख रहा है जो लाल रंग से पेंट किया गया है।

इसमें एक बैनर लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है गणतंत्र द्वार।

अंदर से सामने से मकान दिख रहा है।

पाया पर खड़ा किया गया है जो पाया पीले रंग से पेंट की गई है।

एक वाइट बल्ब जल रहा है।

आदमी खड़ा है इस दुकान में जो व्हाइट रंग का टी शर्ट पहने हुए हैं और वो किताबें खरीद रहा है।

उधर रोड दिख रहा है एक गाड़ी लगा हुआ है।

इधर हरे भरे पेड़ पौधे हैं और नीचे टाइल्स बाहर भी दिख रहा है ।

परफ्यूम रखल है कलम ये सब रखा हुआ है इसमे।